और दो डस्टबिन भी रखे हुए हैं।

यह एक एच_पी का पेट्रोल पंप है यहां पर दो आदमी पेट्रोल भरवा रहे हैं।